जो ये पिक्चर है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं ये पिक्चर बहोत ही सुंदर दिख रही है।

दी अच्छी दिख रही है और साथ में जो ये ट्रेन है ये तो बहोत ही अच्छी दिख रही है और साथ में जो एक कुर्सियां है।

जो कि बहोत ही अच्छा लग रहा है और जो साथ में हरे भरे पेड़ पौधे हैं इस आसमान की शोभा को बढ़ा रहे हैं और ये जो ग्राउंड है यहाँ पर ये तो और ही सुंदर दिख रहा है इसकी --

ये सोफे के पिछले साइड ना इक आदमी भी बैठा हुआ है ये कुछ काम--

वो भी बहोत दिख रहे है सरक से चल रहे और ये पूरे और साथ में ये--

और इसके साथ ऊपर देख सकते है आप क्या जो कि--

और गेट भी है काले रंग का और पीछे जंगल दिख रहा है और--

और ये कुर्सी अभी ना बहोत अच्छी लग रही है और--

यहां पर है जो है पेड़